पीछे बहुत बड़ा बंगला दिख रहा है इसके किनार में बहुत पूरा आड़ी-आड़ी पूरा जंगल-झाड़ सब है वो बहुत अच्छा पीछे बहुत बड़ा -बड़ा पेड़ भी --

ये जंगल किसी जंगल का है बहुत सारे बहुत ज्यादा झाड़ी है यहाँ पे कोई आदमी एक फूल तोड़ के दिख रहा है।

ऊपर भी एक है। एक मकान और ऊपर जंगला लगा हुआ है। बाहर में ग्रील का जीरा वाला स्टील वाला गेट का घेरा लगा हुआ है।

ये सब लड़का लोग कॉपी पे लिख --

गौतम बुद्ध का सोना का मूर्ति लग रहा है देखने में | यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे भगवान का कुछ नकासी का काम कर रहे हैं | आदमी लोग नकासी काम करेगे । पूजा करेगे

ऊपर से ओवर ब्रिज है। नीचे से जाने के लिए इसके अंदर नाव गाड़ी है पता नही चल रहा है।